यहां पे हर तरह का कपड़ा मिल रहा है आपको दिख रही है यहां पर जैकेट वगैरह।

छत पर घूमने वाला पंखा जो ये फैन वो लगा हुआ--